और यहाँ पर जो है कुछ बॉक्स वगैरह बने हुए दिख रहे हैं नीचे में काँच के नीचे में कुछ और आसपास में जो है --

इमेज में काफी ऊँचे-ऊँचे पहाड़ दिख रहे है पहाड़ के पे काफी सारे कुछ घास वगैरह दिख रही है जो ग्रीन दिख रही है। कुछ सुखी वगैरह दिख रही है और यहाँ आसमान दिख रहा है। आसमान कुछ ब्लू वाइट कलर में दिख रहा है।

यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर में आसमान दिख रहा है कुछ पत्तियाँ दिख रही हैं ग्रीन कलर में कुछ पत्थर वागेरा भी दिख रहे हैं और यहाँ पर जो है यल्लो कलर का ये बना हुआ दिख रहा है।

और यहाँ पर काफी ऊँचे ऊँचे पहाड़ वगैरह दिख रहे काफी ऊँचे पेड़ दिख रहे और आस पास में यहाँ पर आसमान दिख रहा आसमान कुछ ब्लू वाइट कलर में दिख रहे और काफी दूर तक पानी भरा हुआ दिख रहे काफी वाइट मे दिख रहे |

बिल्डिंग दिख रहा है। बिल्डिंग की पेंटिंग व्हाइट कलर में दिख रही है। कुछ कांच वगैरह लगे दिख रहे हैं और सामने में यहाँ पर एक जो है कुछ पोस्टर वगेरा लगे हुए दिख रहे हैं। जिसके ऊपर ब्लू कलर का कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। काफी चेहरे लगे दिख रहे हैं।

खम्बे वगेरा दिख रहे हैंउनके ऊपर कुछ तार भी हैं। तार जो है वो ब्लैक कलर में दिख रहा हैं। ऊपर यहाँ पे जो है आसमान दिख रहा है।